ढाबे के अंदर बहोत सारे कुर्सी और टेबुल लगे हुए हैं।

और दीवाल पे टाइल्स लगा हुआ है।

यह एक हार्डवेयर का दुकान है।

और हर रैको पर बहोत सारे हार्डवेयर के समान दिखाई दे रहे हैं।

इसकी वेरी किंग बांस से की गई है।

यह एक लाइब्रेरी है जो कि पीले रंग का है।

जिस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया लिखा हुआ है।

यह एक खाली प्लेस है जिसकी फ्लोरिंग सीमेंट के इंटे से की गई है।

दोनों टेबुल टेनिस का रंग हरा है।

कुछ पेड़ हरे हैं और कुछ पेड़ो की टहनियां सुख गई हैं।

एक गाड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई है।

और इसके छतके ऊपर काफी लाइटे लगी हुई है।

सामने ही एक आग्जेस्ट फैन लगा हुआ है।

जिसपे कुछ यात्री लोग सो रहे है।

साथी में यहां पर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है।

इसके अंदर शीशे का बहुत सारा शोकेस बना हुआ है।

जैसे की कुछ फ्लावर पॉट है।

यह एक नदी का किनारा है यहां पे छठ पूजा हो रहा है।